सामने एक अंकल और आंटी खड़े हुए है। साड़ी पहन रखी आंटी ने अंकल ने कोट पैंट पहना हुआ है।

टिशू पेपर है कुछ लोग खडे हुए है सलाद रखा हुआ है।

एक बड़ा डब्बा दिख रहा है जिसपे लिखा है एशियन पेंट्स कलर काफी सारा सामान पड़ा है पीछे एशियन पेंट्स के डिब्बे पड़े हुए--

गिव योर बेस्ट शॉट पीछे लिखा है प्लीज कीप साइलेंस दो लड़कियां खड़ी है और दो लड़के खड़े हुए हैं और लिखा है नथिंग इज माय पैशन --

शाम का समय है पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।

इन्होंने अपना ऐड्रेस लिख रखा है झज्जर का ऐड्रेस हे और ई मेल आई_डी दी हैं।

और टेबल के ऊपर ये प्लेट पे खाने का समान रखा हुआ है।

दिन का समय है पेड़ भी दिखाई यहा पर हमें--

जीवन ज्योति नर्सिंग होम ट्वेंटी फोर घंटे आपातकालीन सेवाएं--

इस फोटो में सामने तीन लड़के दिख रहे हैं एक लड़का लेटा है दो लड़के जो हैं वो बैठे हुए है और रेत पे ये लोग बैठे है।

आसपास सिर्फ मिट्टी नज़र आ रही है थोडे बहोत पेड़ नज़र आ रहे हैं।

फोटो में सामने काफी टा सारे डिब्बे पड़े हैं ब्रा भी रखी हुई है अंडरगारमेंट्स है लड़कियों के मेकअप के बॉक्स रखे हुए हैं।

पिया भी रखी हुए है अलग अलग साइज की दो चार की दो आठ की।

चार अलमारी ऊपर है एक गेट दिखाई दे रहा है।

सामने एक दुकान है दुकान का नाम है लकी कन्फेक्शनरी ऊपर लिखा है श्री गणेशाय--

सामने माता रानी की मूर्ति है साइड में एक और मूर्ति है और एक औरत है जिसने साड़ी पहेन रखी है।

फर्स काले रंग का नजर आ रहा है।

अं किसी के घर में रखा कुलर दिख रहा है झूला दिख रहा --

एक सरदार जी नजर आ रहे हैं एक पानी की बोतल है चेयर भी दिख रही--

और यहा पर खाई नजर आ रही है एक लड़का दिख रहा है जो--

और नीचे हरे कलर की जमीन है।